यहां इस फर्श में कालीन बिछी हुई दिख रही है।

सामने एक आदमी भी दिखाई दे रहा है सामने एक हरी कलर की ग्रीन ग्रील भी दिखाई पड़ रही है।

जमीन में बहोत सारे स्पर्श भी बिछे दिख रहे हैं।

सीलिंग में बहुत सारे पंखे भी नजर आ रहे हैं सीलिंग का रंग सफेद दिखाई पड़ रहा है।

बहुत सारी पिलरे दिख रही है।

हरी भरी घासे भी दिख रही है और एक लाल कलर का खंबा भी दिखाई दे रहा है।

इस जगह में बहुत सारे चीजे बिकने के लिए रखी हुई दिख रही है।

चार बड़े बड़े पिलर भी दिखाई पिल रहे हैं जिसके ऊपर कुछ फूल से सजी हुई चीज रखी हुई मिल रही है।

यह एक जगह का दृश्य दिखाई दे रहा है सामने एक कॉफी की मशीन भी दिखाई पड़ रही है।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

इसमें भिन्न प्रकार की चीजें दिख रही है सामने एक आदमी भी नजर आ रहा है।

यह किसी चीज का दृश्य दिखाई पड़ रहा है।

सामने एक बांस भी दिखाई दे रहा है ।

आस पास में बहोत सारे घास भी दिख रहे हैं।

सामने दीवार का रंग पीला और भूरा कलर का दिख रहा है।

बहोत तरह तरह की लाइटें भी लगी हुई दिख रही है।

ऊपर में दो सादे कलर की लाइटें भी दिखाई पड़ रही है।

पानी चढ़ने वाली मशीनें भी दिख रही हैं।

सामने दो ठेले भी दिखाई दे रहे हैं जीसमें भिन्न प्रकार के फले बेचने के लिए रखे हुए हैं।